ऐसी मछलियां हमें ज्यादातर मच्छी बाजार में मिल जाती हैं। मच्छी बाजार से मछलियाँ आज वही जाते खरीदनते है जो कि --

ऐसे बैंक्वेट होटलो और बड़े-बड़े जहाँ पे शादियां है या कोई त्योहार मनाया जा रहा है वहां हमको देखने को मिलता है जहां ऐसी सजावट होती है जहां आमतौर पे हमें जहां शादी हो रही होती है वहां पे दिखता है।

हेसे रोड में काफी जगह हमने देखा है कि जहाँ बस स्टेशन ख बस स्टेशन होता है वहाँ पे भीड़ कम होती है क्योंकि लोगों को पहले से ही पता होता है कि बस कब चलेगी।

तो वो उसी अपने उसी टाइम से आते हैं| एसे कही जगह भारत में भी एक अलग अलग बस अड्डा है हर स्टेशन है | जैसे ट्रेन स्टेशन होता है वेसे बस होता है।

अलग से कोई हॉल होता है या कोई वो होता है क्योंकि इसके ना आगे से ही बाहर से ही बता सकते हैं इसके अंदर की बहुत सारे रूम हैं तो ये होटल तो नही होगा तो ये कॉलेज ही होता है ऐसा काफ़ी जगह --

कई बड़े-बड़े आजकल अ म हॉस्पिटल है। हालांकि ऐसा नहीं है की आज ही है कल पहले नहीं थे पहले भी थे।